अगल-बगल में हमको पथल भी दिख रहा है।

यहां पे हमको बालू भी दिख रहा है।

इस मूर्ति का पूजा एक पंडित जी कर रहे हैं और एक लेडी भी है और एक आदमी भी है।

एक बूढ़ा आदमी है सादा कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

यहां पे हमको बहुत बड़ा ग्राउंड दिख रहा है।

उससे पानी बाहर आ रही है जो की देखने में काफी सुंदर लग रहा है।

यहां आपके बगल में हमको झले झली भी दिख रहा है।

होली है और ग्रीन कलर का कैरेट रखा हुआ हैं।

यहा पे एक हमको बिल्डिंग दिख रहा है।

यहां पे एक हमको टेम्पू वाला भी दिख रहा है जो टेम्पू चला रहा है ।

यह एक दुकान का फोटो है यहां पर बहुत सारा समान रखा हुआ है।

इसके जस्ट साइड में एक पेड़ हमको दिख रहा है।

यहां पे हमको भगवान जी का अम् मंदिर दिख रहा है।

और यहां पे इस मंदिर में आगे हमको यहां पे बहुत सारा आदमी भी दिख रहा है।

यहां पे जो टाइल्स लगा हुआ है वो गोल्डन कलर का है।

एक पत्थल पर दो आदमी बैठा हुआ है जो गंजी जो पहना है एक सफेद कलर का एक काला कलर का।

पंखा भी दिख रहा है।

नीचे बांस फेंका हुआ है एक कार खड़ी है जिसका कलर ग्रे है।

और यहां पे मसाला जो है टंगा हुआ है।

यहां पे हमको केतारी भी दिख रहा है।

यहां पे दो लेडीज मुंह ढक के बैठी हुई है और यहां पे बहुत सारे लड़का भी है और लड़की भी है।